मुझे फोटो में बहुत सारे सुंदर सुंदर छोटे छोटे गमले दिखाई दे रहे हैं जिनकी साइज बहुत ही छोटी है उसमें फूल सजाया जाता है।

मुझे फोटो में ये इस्टेशन की फोटो दिखाई दे रही है जहाँ पे लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं।

और ये येलो कलर की वस्त्र बनाए गए हैं और इनके बाजू में एक साइड म हाथ में बंधा हुआ है।

और एक चलने वाला मशीन हैं और एक दौड़ने वाला मशीन हैं बहोत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं।

फोन पे बातें कर रहा है बहोत बड़ी बिल्डिंग जैसी दिख रही है ये--

मुझे फोटो में दिखाई दे रहा है कि ये एक फूलों का बागान दिख रहा है जहाँ पे बहोत सारे छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं।

मुझे फोटो में दिखाई दे रहा है कि ये एक क्लीनिक की फोटो है जिस जोकि हेल्थ से जुड़ी हुई है।

और सत्संग चल रही है और उनकी प्रार्थना की जा रही है।

पौधे लगाए हुए हैं जैसे लग रहा है कि यह बेचते भी हैं और सामने बहुत बिल्डिंग बड़ी बड़ी हैं।

मुझे फोटो में गुरुद्वारे की फोटो दिख रही है जोकि बाबा जी का फोटो लगा हुआ है जिन्हें फूलों से सजाया गया है ऊपर माला भी पहनाया गया है।

इनमें फूलों का इस्तेमाल ऊपर बहुत सारे किए गए हैं रेड पिंक येलो वाइट बहुत सारा अच्छा लग रहा है दिन --

मुझे फोटो में ग्राउंड दिख रहा है जहाँ पे फुटबॉल खेले जाते हैं और एक खड़ा हुआ है ब्लू कलर की --